इसका व्यू बोहोत ही सा दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ लोग एक फ़र्शी को ले जाते हुए दिख रहे हैं।

के ऊपर से कुछ बिजली लाईनस गई हुई है।

यह एलजी का शोरूम हैं जिसमे काफी सारी एलईडीइस दिखाई दे रही हैं।

ऊपर नीला आसमान आइट-साइट में कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।